इस पोस्टर में लिखा है रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी

यह पंचायत है पंचायत में लाल कलर से लिखा है।

यहां पर तीन कुर्सियां हैं।

यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

और दुकान में बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।